क्योंकि इसमें फूल की मतलब जो है प्रजातियां वो बहुत सी प्रजातियां है इसलिए देखने में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है।

और यह घर बहुत ही ज्यादा मस्त है क्योंकि दिखने में तो ऐसा घर मतलब --

और घूमने के लिए ये बनाया गया है इधर घूमर घूमा जाता है ये ----

और गाड़ी बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है इसमें माइलेज थोड़ा कम देता है लेकिन बहुत ही लाभ --

दो है ब्लू कलर का एक रेड कलर का है जो बहुत ही ज्यादा मस्त दिख रहा है क्योंकि बुलेट सब सब लोगों का शौक होता है कि हमको बुलेट लेना है।

और हवा में ही है फुटबॉल और सब खेल रहे हैं सब फुटबॉल दो अलग टीम का है तीन इधर अलग टीम का है वही ये लोग खेल रहा हैं।

और वो पे और उसके हाथ में एक मूली टाइप का कुछ बंधा है और वो --

अपना फाइनल में पहुंचता है और फाइनल में जो जीत जाते है उसे ही गोल्ड मेडल --

हर भगवान का जो जो भी मूर्ति उठाया जाता है उसको एक दिन मतलब कुछ निश्चित समय के बाद उसको विसर्जन के लिए निकाला जाता है तो वही अभी दिख रहा है यहाँ --

बहुत ही स्लो काम चलेगा ये है जिसके कारण से इंटरनेट चल रहा है इंटरनेट चलने के कारण बहुत ही कुछ मतलब जल्दी तुरंत हो जा रहा है जैसे की --

बहुत ही धूमधाम से शादी मनाया गया है और ऐसा ही शादी मनाया मनाय जाने से मतलब मन को थोड़ा --

ट्रेन का टिकट कटाने के बाद प्लेटफार्म में आते हैं प्लेटफार्म में आने के बाद गाड़ी पकड़ते हैं उसके बाद हम लोग को जहां जाना जाता है वहां हम लोग--

और ए लेकिन एक बात है कि खड़ा होकर पानी नहीं पीना चाहिए लेकिन ये पी रहै हैं इसको कुछ छती पहुंचेगा बहुत ही अच्छा लुक है ये सब का--

और रूखा बहुत ही ज्यादा भयानक दिख रहा है उधर जाना मतलब--